जमीन मिट्टी से बनी हुई है।

चित्र मे सड़क नजर आ रही है सड़क पर कई सारी गाड़ियां खड़ी है अगल बगल बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है दो खंबे नजर आ रहे है।

चित्र मे एक बड़ी इमारत नजर आ रही है अगल बगल बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है सामने एक स्तब्ध बना हुआ है जिसपर एक घड़ी का निशान है ऊपर खुला नीला आसमान है।

चित्र मे एक दुकान नजर आ रही है दुकान के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों मे बैनर लगा हुआ है।

कई सारे लोग दिख रहे है अगल बगल बड़े बड़े पेड नजर आ रहे है ग्राउन्ड मिट्टी से बना है ।